यहाँ पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पत्थर लगे हुए हैं दिवार पर जो वाइट कलर के हैं।

यह एक गैलरी दिखाई दे रही है। जिस में कुछ दुकाने है।

इसमे कुछ लेडीज़े बैठी दिखाई दे रही है।

सामने एक बड़ा बेड दिख रहा है जिस में कुछ लोग आते दिख रहे हैं।

यह शॉपिंग मॉल जैसा दिखाई दे रहा है। जिसमे कपड़े रखे हुए है।

बिल्डिंग में लाइटे लगी है लाल पीली हरी गुलाबी--

सामने एक क्रेन दिखाई दे रही है।

यह एक रोड पे --

यह एक गार्डन है|

ऐंसा लग रहा है जैसे काम्प्लेक्स हैं। इसमें काम भी चल रहा है।

पीला कलर दिखाई दे रहा है।

नीचे ग्राउंडस अ दिख रहा है जो कि पूरा अ खुले आसमान के नीचे है।